कांच पे पड़ती लाइट कब प्रकाश दिखाई दे रहा है।

टेबल पर कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है टोकरी में।

एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे यादगार चिकन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे कुकर रखे दिखाई दे रहे हैं।

जगह का नाम लिखा दिखाई दे रहा है और लाइटे दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहोत सारे पंखे दिखाइ दे रहे है।

जमीन पे बना हुआ कुछ डिजाइन दिखाई दे रहा हैं।

कांच की खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट रंग का बैठने के लिए कुछ लगा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

गमले दिखाई दे रहे हैं एक छत बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में सजाया हुआ मंडप दिखाई दे रहा है लाल कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

मंडप के नीचे बिछाया हुआ हरा कलर का मैट दिखाई दे रहा है।

एक गाय सफेद कलर की यहां खड़ी दिख रही है।

उसके सामने खिड़की दिखाई दे रहा है खिड़की पे जाली लगा हुआ दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारी टेबल दिख रही हैं कुर्सियां दिख रहा है।

ए_सी दिख रहा है वाइट कलर का दिवाल दिख रहा है खिड़की पे वाइट कलर का पर्दा जैसा कुछ लगा हुआ दिख रहा है।

बहुत सारी मशीनें दिख रही हैं सामने मॉनिटर दिख रहा है।

यह चित्र एक रस्ते का है इसमें एक ऑटो दिख रहा है।

इस चित्र में सामने एक मकान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियों का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

पहाड़ दिख रहा है बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं कुछ पानी जमा दिख रहा है नीला आसमान दिख रहा है।

कुछ कुर्सी दिखाई दे रहा है एक ऑल आउट दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर से बिजली का तार गया दिख रहा है।

कांच पे पड़ती लाइट की परछाई दिखाई दे रही हैं।

कुछ पानीपुड़ी और दहीपुड़ी के फोटो लगे दिखाई दे रहे हैं।

में दो तीन सोफे रखे दिखाई दे रहे हैं।

सूखे हुए और हरे भरे घास दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

टा भूरे रंग की जमीन दिखाई दे रही है।

इन टेन्ट के पीछे सफेद कलर का कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक इस्त्री दिखाई दे रहा है।

एक लाइट दिखाई दे रही है शीशा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे हरे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मे सामने भी एक ठेला दिख रहा है तीस की स्पीड वाला एक खंभा दिख रहा है सामने बाजू में साइड में साइकिल रखा हुआ दिख रहा है।

आमने कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं बहोत सारी कुर्सियाँ लगाई दिख रहीं हैं।

सामने झील या तालाब जैसा कुछ दिख रहा है।

इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है दो बिल्डिंग के आधे हिस्से दिखाई दे रहे हैं।

बीच में कुछ आदमी औरतें दिखाई दे रहे हैं।

खिड़कियां दिखाई दे रही है पंखे दिखाई दे रहे हैं।

लाइट की परछाई पड़ती दिखाई दे रही है।

इस चित्र में पानी दिखाई दे रहा है पत्थर दिखाई दे रहे हैं।